और उनके सामंने बहुत सारे पत्ते और रंग -बीरंगे फूल दिखाई दे रहे हैं।

और पास में दो-तीन आइसक्रीम की टपरी भी दिखाई दे रहे हैं।